दृश्य बहोत ही प्यारा है और यहाँ पे बहोत सारी नावें नज़र आ रही हैं।

ये करीम नगर की डेरी है।

कुछ चीज़ रखी हुई हैं और अच्छा सा एक घर भी है।

ये किसी कार्यकर्ता की ऑफिस नज़र आ रही हैं।

जहाँ लोग अपना वक्त गुज़रने के लिए आये हुए हैं।